कांच दिख रहे है काफी सारे फूल दिख रहे है गमले के बने हुए ।

और ऊपर साइड में बहुत सारे स्टैर्स दिख रहे है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन्स पे और अ एक वेन दिख रही है खड़ी हुई बहुत सारे पेड़ दिख रहे है और फर्शियां दिख रही है बहुत सारे लोग चलते हुए --

इस फोटो में एक शेर है और स्टैर्स दिख रही है पेड़-पौधे दिख रहे है बहुत सारे।

और बॉउंड्रीस दिख रही है लोहे की आसमान दिख रहा है और पहाड़ दिख रहे है थोड़े से दूर यही पर।

बैकग्राउंड में दो दीवाल दिख रही है वाईट कलर की नीचे जो फर्श है वो हमे दिख रहा है चोक्लेटी कलर का।

धूप दिख रही है बहुत ज्यादा एक बस और दिख रही है जोकि थोड़ी दूर खड़ी है। बादल दिख रहे हैं व्हाइट कलर के आसमान दिख रहा है ब्लू कलर का--